सीढ़ियां दिख रही है सामने सीढ़ियों के ऊस साइड बार बना हुआ है।

जाली लगी हुई है जाली दिख रही है आस पास बड़े से पेड़ पौधे नहीं दे रहा है।

तालाब में बड़ा सा शिप दिख रहा है और आसपास छोटे छोटे दूरी पर शिप दिखाई दे रहे हैं ये बड़ा सा --

ये रोड पर एक ऑटो खड़ा है रोड पर एक लाल कलर का ऑटो खड़ा है उसे ऑटो में ए.टी.एम. लिखा है ऑटो में ए.टी.एम. लिखा हुआ दिख रहा है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग लाइटों से सजी दिख रही है एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो लाइटों से सजी हुई है इसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

गाड़ी खड़ी हुई है पार्क में अंदर ये बड़ा सा पार्क है।